सामने से दिख रहे हैं बहुत सुंदर है ये हार --

यह एक ऑफिस है जिसमें एक आदमी बैठा है हाथ में मोबाइल लिए हैं टेबल है।

आस पास में लॉज है शादी वगैरह होती हैं ऊपर लाइट्स है एक आदमी बैठा है एक जा रहा है बहुत ही खूबसूरत नजारा--

और कुछ आदमी बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

दुकान अच्छी है सामान रखा है दुकान में दो आदमी बैठे है।

बगल मै खंबा है हरे हरे पौधे हैं बीच से सड़क है।

वही एक अह मकान बना है मकान के ऊपर छत पर एक लेडिस खड़ी है नीचे रिक्शा वाला रिक्शा चलाने की--

यह एक लाज है बहुत ही खूबसूरत जगह है एक कुर्सी डली है यहां पे साथ यहां--

बहुत ही सुंदर रूम है ये छोटा सा रूम है।